यहाँ पर एक व्हाइट कलर की बड़ी लंबी -चौड़ी- सी जगह दिखाई दे रही है। जिसके ऊपर कई सारे गोल लंबे ओर छोटे चबुतरे बने हुए दिखाई दे रहे जिनके ऊपर कुछ लोहे के किले भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसके तीन कमरे दिख रहे है तीनो कमरे में गोलाकार गेट बने हुए है जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन भी बनी हुई है।

ऊपर एक बड़ा सा सफेद कमरा दिखाई दे रहा है जिसके बीचों बीच डिजिटल वॉच लगी हुई है। इस कमरे में कई सारे पंखे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और नीचे ब्लू और मरून कलर की मेट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा सा स्टेज है जिसमे दो सिंगल सीटर लाल रंग के सोफे रक्खे हुए दिख रहे है। स्टेज के बगल में एक बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है जिस पर कुछ चल रहा है। स्टेज में नीले और गुलाबी रंग की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

इस चबूतरे के सामने नीचे की तरफ लाल और हरे रंग की मैट बिछी हुई है | यहाँ पर सफ़ेद कुर्सियां बोहोत सारी रखी हुई हैं कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहें हैं।